अ जो आईने के जैसी क बरा सा दरवाजा दिख रहा है वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है उसके पास एक बकेट दिख रही है।

सारा पानी दिख रहा है जैसे समुद्र जैसा पानी दिख रहा है उसमें एक नाव दिख रही है उसमें एक दो आदमी दिख रहे हैं।

दिख रहा है दरवाजे के बाहर जो साम अ जो वहाँ पे पास में दो लड़के खड़े दिख रहे है और दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा पर्दा दिख रहा है। गुलाबी कलर का।

एक काम्प्लेक्स का बिल्डिंग दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पोल खम्भा दिख रहा है वहाँ पे अ बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है बैंक का एक नीले कलर का गेट दिख रहा है अंदर जाने के लिए वहाँ पे--

सीढिया दिख रही है और बाजु में एक ए.टी.एम. दिख रहा है उस ए.टी.एम. में एक अ जो है अ कुछ कुर्सी एक कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है सिक्योरिटी गार्ड --

सामने एक चेयर भी दिख रही है लकड़ी की और वहाँ पे फैन लगा हुआ है लाइट भी चालू है और बहुत सारा मेडिकल का जो भी दवाइयाँ वैगरह होती है वो रैक में रखी हुई दिख रही हैं।

दिख रहा स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख रहे है वहाँ पे रात का समय दिख रहा है लाइट वहाँ पे शुरू दिख रही है।

दो मिक्की माउस है वहाँ से गुब्बारे से डेकोरेशन किया हुआ है और वो बाजु में उसके कुछ डोर दिख रहा है अंदर जाने के लिए और दिन का समय है कोई इंसान नजर नहीं आ रहे।